और चट्टान भी है साइड साइड में बहुत ज्यादा --

वो भी है और कुछ व्यक्ति है जो है अंदर जा रहे हैं ।

और बेंच है। बेंच पे बैठे हुए हैं। बेंच पे कुछ--

भा भी है रेड कलर का और यहाँ पर बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है।